पिक्चर बहुत ही अच्छी और काफी अट्रैक्टिव लग रही है और पिक्चर का व्यू एकदम मस्त यानी सुहाना है।

में हमे हमेशा आगे बढ़ते रहने की राह पर चलाती है तथा हमें कभी भी हार ना मानने की शिक्षा देती है। थैंक्यू

यहाँ कई सारे वाहन है जिसमे गाड़ी मोटरसाइकिल अदि है।